यहाँ पे पेड़ पौधे भी है बिजली के पोल्स भी नजर आ रहे है और जो नीचे की जमीन हैं वो हार्ड है आसमान एकदम साफ़ नजर आ रहा हैं ।

यहाँ पे कुछ बिल्डिंग नजर आ रही है आसमान में सफेद बादल नजर आ रहे है और आसमान भी नीले रंग का नजर आ रहा है

अंदर कुछ सामान नजर आ रहा है ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है इस बोर्ड का रंग सफेद है और दुकान में कुछ सामान हैं।